ये बस से स्टैंड है बस है रोड है टावर है।

बहुत सारा बाइक है नहीं है तीन बाइक है और इसमें आदमी मास्क लगाकर के खड़े है और इसमें चस्मा लगाए हुए है और फिर --

ये हॉस्पिटल हैं और कोई डॉक्टर हैं साधु सदन प्रसाद।

कृष्ण भगवान हैं राधे-कृष्ण जी हैं ठाकुर जी ब बंसी बजा रहे हैं बंसी लिऐ हुए हैं।

ये यहाँ पार्क है यहाँ स्कूल है एक मकान है पेड़-पौधा है।

और मोमबत्ती है लगा हुआ लाल पीला हरा --

ये नाव है। यहाँ पर पानी है। बहोत दूर तक दिखाई दे रहा है। हरा भरा पेड़ पौधा और पेड़ पौधा और इसमें पानी में पड़ा हुआ है। का --